ये शॉपिंग मॉल का पिक है यहां पे बहुत सारे चावल है और बहोत सारे पैकेट्स रखे हुए हैं।

ये ऑरेंज कलर का और इसमें एक जो ग्रीन कलर का है वो हेड वर्कर है।

उस ट्रे के अंदर चटनी है सालाद है चिकन के चिकन लेग पीस इस वगैरा है और बड़े तरीके से डेकोरेशन है आय हाय।

और एक घर है और उस घर के ऊपर बैनर लगा हुआ है घर पे और उसके पास खेत है बहोत बड़ा।

ये चाहे खेत है खेत का व्यू है ये यहां पे इसमें पानी भरा हुआ है गड्ढे में।